यहां पे एक शादी का फंक्शन चल रहा है।

इस के बगल में लिखा हुआ है माईशोज जो कि दो येलो कलर का है और माथा में भी लगाने वाला है।

एक में भी बहुत सारी जींस है और यहां पर बगल में शर्ट भी नजर आ रहा है।

यहां पर एक घर का दृश्य नजर आ रहा है।

और दो गाड़ी ऐसे लगे हुए हैं और कार भी लगा हुआ है।

और नीचे में नीचे के समान में भी है बहुत सारे डिब्बा जोकि बोरा भी दिख रहे है।

यहां पर रिंच पत्थर बहुत सारे सामान दिख रहे हैं।

यहां पर एक बड़ा सा डैम का दृश्य दिख रहा है।

और यहां पर दोनों गेट खुला हुआ है जो की कार का और लाइट दिख रहा है चक्का दिख रहा है।

और बहुत सारे आदमी लोग भी दिख रहे हैं।

यहां पर एक शादी का डेकोरेशन सजा हुआ है।

एक फुट प्लेटफार्म पर मालगाड़ी है खाली है और दू तीसरे प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी भरी हुई है।

यहां पर बड़ा सा घर भी दिख रहा है जो की बिल्डिंग है लाइन से लगा हुआ।

और यहां पे दो एडमिन भी दिख रहे हैं और बगल में दो होटल भी है।

इसका भूरा कलर का बाल है और इसका आंख नजर आ रहा है।

और यहां पे उख भी दिख रहा है।

यहां पर एक लड़की का दृश्य नजर आ रहा है जो कि यहां पर रेड कलर के साड़ी पहनकर डांस कर रही है।

और एक लड़की का हाथ नजर आ रहा है।

और जो कि यहां पर कुर्सी भी दिख रहा है बहोत सारा।

दो ट्रैक्टर का मोड़ी खुला कर रखा हुआ है जो कि इसका सर्विसिंग हो रहा है।

एक बस व्हाइट कलर का है और एक बस ब्लू कलर का है।

यहां प कुत्ते का फोटो भी लगाया गया है।

और पानी का बोतल दिख रहा है चम्मच दिख रहा है।